यहां पे अलमीराज में बहुत सारी बुक्स रखी हुई है और यह यहां पे तीन बच्चे और इनकी मां है।

ये यहां पे एक शॉप है और यहां पे इसमें बहोत सारी चीजे हैं कि--

एक बेकरी की शॉप है जहां पे यह पेस्ट्री वगैरा दिख रही है कुछ के बर्थडे केक जैसे बने हुए है ब्लैक कलर के है व्हाइट कलर के है।

ये यहां पे पटाखे जला रहे हैं और ये रात का टाइम है और यहां पे एक आदमी है इसके हाथ में एक स्टिक है।

ये यहां पे एक क बेडरूम है और यहां पे ये बैड को अच्छे से सजाया गया है और यहां पे एक अलमीरा है और यहां से बलूंस लगे हुए हैं।

ये एक सड़क की फोटो है जहां पे बहोत सारी बसेस दिख रही है बहोत कलर की।

व्हाइट और ब्लू कलर की एक दिख रही है येलो कलर की एक है व्हाइट और ब्लू कलर की है और खाली व्हाइट कलर की एक है।